यहाँ एक बिल्डिंग बनती हुई दिख रही है जिसकी छत दिख रही है जहा पर भी बनने का काम चल रहा है लोहे के बड़े बड़े रॉड लगे हुए है।

अ केले के पेड़ के पत्ते लगे हुए है हरे हरे कुछ माइक दिख रहे है दो घोड़े नजर आ रहे है प्लास्टिक के।

चेयर और टेबल लगे हुए दिख रहे है जिसके सामने मै कुछ लडकिया बैठी दिख रही है पीछे कुछ और आदमी दिख रहे है।

दुसरे तरफ एक और मैदान दिख रहा है जहा पर छोटे छोटे हरे घास बिखरी है और खुला आसमान दिख रहा है।